चारो ओर दीवार बनाई गई है जो वाइट कलर की है पीछे कुछ गंदे पड़ी हुई है।

इस तस्वीर में सामने ही एक डीजों को दिखाया गया है जिसमें ब्लैक कलर के डी_जे रखे हुए हैं और कुछ बाजे लगाए गए हैं।

लोगों की बाहर काफी भीड़ है और एक बाइक खड़ी हुई है जिसमें एक आदमी कुछ बेच रहा है।

कुछ आदमी साइड में खड़े हुए हैं एक येलो कलर के क्रेट मे मच्छलीया रखी है और एक तराजू रखी है।

नीचे कुछ लकड़िया रखी हुई है और एक तराजू रखा गया है दीवार पर टाइलें लगाई गई है जो वाइट कलर की है।